जिसमें कई सारी कुर्सियां और टेबल रखे हुए हैं।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

मुझे इस तस्वीर पर एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

एक फ्रिज भी है जिसके अंदर एक कोको कोला स्ट्रिंग पेप्सी माउंटेन डिव --

परदा भी लगा हुआ है।

पर फूल भी लगाया हुआ है।

के सवाद दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर का आसमान भी दिख रहा है जिसमें कई सारे बादल हैं।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

इस रेस्टोरेंट के दरवाजे भी आईडे से बनाए हुए है।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

इस तस्वीर में बहुत सारे मशीनें दिखाई दे रहे हैं।

जिसके सामने लोग खड़े हुए हैं।

मिडिल के फर्स्ट बेंच पर कोई नहीं बैठ रहा है।

मुझे इस दृश्य में एक कमरा दिखाई दे रहा हैं।

से बनाया हुआ ठेला गाड़ी भी है।

इसमें कई सारी कुर्सियां और टेबल रखे गए हैं।

इसमें मॉनिटर भी लगा हुआ है।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

और कई सारे पहाड़ भी है।

एक घर है और एक बाइक भी है।

ढेर सारे वायर्स भी है।

मुझे इस तस्वीर में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कई सारी कुर्सियां भी है।

जमीन भी दिखाई दे रहा है और--

मुझे इस तस्वीर में कई सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक जीव दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक इंसान एक्सरसाइज कर रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एयरोप्लेन दिखाई दे रहा है।

कई सारे हरे हरे सब्जियां है। जैसे कुकुम्बर कैप्सिकम लेडी फिंगर बिन्स और और भी कई सारी चीजे हैं।

उसके साथ एक ये एड्रेस गेट भी लगा हुआ है।

यह हरा रंग का कारपेट बिछाया हुआ है।

इसमें एक टेबल भी है।